इसके ऊपर एक कोई दिख रहा है।

छोटे छोटे बच्चो की कैची है पाजामे है ट्रकसुट है।

एक सुन्दर सा पहाड़ है।

एक बड़ा सा बैनर हैं।